ऊंचाई पर बना हुआ है इस फोर्ट को लाल पत्थर से बनाया गया है।

इस पेंटिंग में एक केक बना हुआ है।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

उस गेट के बाहर एंट्री गेट लिखा हैं।

सजा हुआ है और कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं।

उस गली के दोनों किनारो पर बिल्डिंग बनी हुई है।

उस फ्रिज में आइसक्रीम पड़ी है उस फ्रिज में--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

एक बहोत बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है।

यह बिल्डिंग लाल कलर की बनी हुई है।

कुछ लोग इस कॅफे में बैठे हुए हैं।